यहाँ पर लोहे की खुच लगी हुयी है जो जिस कारन फिरोजा है सामने लोहे का जाल भी बना हुवा है जिस से ग्राउंड किया गया है यहाँ पर पते है जो हरे रंग के है और टहनी जिस-का रंग बहुत प्या--

यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे है जो हरे और काले रंग के है और यहाँ पे दीवार है और खुला आसमान है जो नीले और बैंगनी और सफेद है यह बहुत खुबसूरत इलाका लग रहा है और यहाँ पे लोग अपनी तस्वीर खिचवाने आ --

जैसे की यहाँ पर मैगी भी रखा हुआ हैं और शैम्पू की बोतल और हैंडवाश भी रखा हुआ हैं यहाँ पर डेटॉल्स सवलों सारे चीज रखी हुई हैं जो ये मॉल का लग रहा नीचे का--

यहाँ सामने बहुत ही खुला इलाका है बगल में समुद्र है जिसका पानी नीले रंग का है और ये बहुत ही खुबसूरत नजारा लग रहा है और यहाँ रोड है और बड़े बड़े खंभे भी खड़े हैं।

टमाटर काफी टेस्टी लग रहा हैं। और ये छोटे बड़े हर साइज में है यह हरे रंग के ओर लाल रंग के भी नजर आ रहे हैं। यह पका कर भी खाया जा सकता हैं। और कच्चा भी खाया जाता हैं। और --